काउंटर पर एक व्यक्ति बैठे हुए है।

दृश्य में हमें एक ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का बोर्ड दिखाई दे रहा है ।

इस दृश्य में हमें बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे नजर आ रही है।

यह दृश्य एक बस स्टैंड की है ।

गुलाबी एवं सफेद रंग के पर्दे चढ़े हुए हैं।

कुछ गाड़ियां लगी हुई नजर आ रही है।

यह दृश्य एक मंदिर का है।

सामने एक व्यक्ति नजर आ रहे है।

एवं झूले के सामने एक लोहे का कुछ रखा हुआ है।

गेट के बाहर एक टेबल में एक लेडिस बैठी हुई है उनके पास दो कुर्सियां लगी हुई है।

बड़ी बड़ी बोल्डरे नजर आ रही है ।

सीलिंग पर कुछ लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

खिड़की के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक लंबा सा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें शोरूम के बाहर कुछ पैसेंजर टेंपू और कुछ डाला टेंपू दिखाई दे रहे।

सामने एक स्कूटी भी नजर आ रही है।